और बाइक स्कूटी भी खड़ी हुई है एक आदमी बैठा हुआ भी है।

यहाँ पर कुछ डेकोरेशन की गई है।

खड़ी है उसका दरवाजा खुला हुआ है उसके बराबर में एक आदमी खड़ा है।

और इसके बाहर एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

और उसके आसपास कई लोग खड़े हुए हैं।

जिसमें बाइकें खड़ी हैं स्कूटी भी खड़ी है।

और आस पास बाइक स्कूटी भी खड़ी है।

पे साइकिल के पास खड़ा हुआ है।

यहाँ पर कई लेडीज हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है।

और इनके हाथ में पूजा का सामान है सूप है सूप में भी सामान रखा हुआ है।

एक खड़ी हुई हैवो देख रही हैं इनका बनाया हुआ।

घर के बाहर एक टीन का छज्जा बनाया हुआ है।

जिसमें लिखा है निर्माण भवन और इसके नीचे कार खड़ी हुई है।

और यहाँ एक बैनर है जिसमें लिखा है पुलिस असिस्टेंस रूम --

बैट फुटबॉल और टाइल्स और साइकिल भी है।

और मंदिर के भी शिखर के बीच में गणेश जी की फोटो है।

और एक्सरसाइज करके अपना वेट कम कर सकते हैं अपने आप को सुडौल भी कर सकते हैं।

और नीचे लेडीज भी हैं एक लड़की भी है जिसने छोटे बच्चे को गोद ले रखा है।

औ गुलाबी रंग के फूल है येलो कलर के गेदे के फूल भी है और--

सड़क पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में साइकिल है।

उसने अपने हाथ में भी जूते पहन रखे हैं पैरों में भी जूते पहन रखे हैं एक कैप लगा रखी है।

और सिर नीचे की साइड कर रखा है एक हाथ ऊपर कर रखा है।

तो यहाँ पर फूलों से मेन गेट को सजाया गया है।

के चित्र लगे हुए हैं उसके ऊपर लाइट भी जल रही है।

औ बाइक के कई पुर्जे रखे हुए हैं।